और फिर ऐसा कुछ क्रिएट करते है जिससे सबके दिल को भा जाता हैं।

बर्थडे का सामान मिलता है आइस क्रीम चॉकलेट्स और भी ढेरो सारी चीज़े जिन्हे बच्चे अपनी बर्थडे के दिन ख़रीदते हैं।

और आज-कल के नाई है वो नए नए डिज़ाइनस में बाल कटने लगे है।

अटूट विश्वास से बंधन बंधी हुई है प्रेम कहानी के दो अनोखे किरदार है।

जहाँ से सभी लोग अपने लिए नए-नए डिज़ाइन के कपड़े खरीदते है और उन्हें बड़े ही शौक से पहनते है।